यहाँ पर कुछ बच्चे नाचते हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर बहुत सारे रिक्शा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एक आदमी नीले कलर की टीशर्ट पहनकर खड़ा हुआ है।

यहाँ पर बहुत सारे लोग नदी मे खड़े हुए है ये सभी लोग यंहा पर डुबकिया लगाने आए है।

इन सभी के हाथों मे अगरबत्ती है ये सब हाँथ जोड़कर के खड़े हुए है ये सभी लोग यंहा पर नदी कि पूजा करने आए है यंहा बहोत भीड़ दिखाई दे रही है और ये देखने मे अच्छा लग रहा है।

यहाँ तालाब मे बहुत सारे हरे पत्ते भी दिखाई दे रहे है ऊपर दृश्य भी बहुत सुंदर देखने को मिल रहा है ये सभी औरतें टीका लगाए हुए खड़ी हुई है।

उनके पीछे एक गेट भी है और दीवाल पर एक चित्र भी बना हुआ है वे सभी लोग योगा करते हुए अच्छे लग रहे है।

यंहा कुछ लोग बच्चे बैठे हुए है। यंहा पर एक आंटी हाँथ मे ह चाय का कप लिए हुई बैठी हुई है। यह दुकान देखने मे बहुत सुंदर लग रही है।

मंदिर के पुजारी जी पूजा कि तयारी कर रहे हैं। यह देखने मे बहुत सुंदर मंदिर लग रहा है।